इसमें बहुत सारे खिड़की और दरवाजे हैं।

उसके ऊपर एक पंख लगा हुआ है।

सामने भी बहोत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं जो की बहोत हरे भरे हैं।

जिसमें क्लीयरेंस लिखा हुआ है।

जहां की रंग बिरंग लाइटों से सजावट की गई है।

यह दृश्य एक पिंजरे का है।

बगल में डब्बा रखा हुआ है।

सामने में एक बड़ा सा लंबा सा शीशा लगा हुआ है।

सामने एक चार चक्के गाड़ी खड़ी हुई है।

यहां पर बहोत सारे लोग हैं।

यह दृश्य एक पार्क का है।

यह एक पेंट की दुकान है।

यहां पर एक छोटा घर बना हुआ है जोकि करकट का है।

यहां पे एक फायर एक्स्टिंगसर है।

इसमें से एक आदमी के शर्ट का रंग ब्ल्यू है।